काफी अच्छे कपड़े पहनी हुई है एक नाइट है वहाँ पे क्या कहते है डांस कर रहे है ढेला के ऊपर और काफी लड़किया--

एक आदमी बैठा हुआ है और ये कुछ काम कर रहा है उस वालु पे ही बैठे बैठे बिल्डिंग काफी बड़ी सी है और खाचे बने हुए है उस बिल्डिंग के।

वो हाथो पर लिए हुए है उस जिम को और मशीन को और हैंड्स से कर रह है जिम को बैठ के और क्या कहते है उप-आह आगे उपर अपनी--

फोटो रखा है पानी रखा हुआ है एक अंकल जी हात जोड़के खड़े खड़े हुए है काफी सारे स्टोर मे सामान रखा बुक्स टेबल --

पहाड़ भी लग रहे है पेड़ पौधे भी है यहा पे नजारा बहुत खूब सूरत है अंकल जी घूमने के पर्पस से खड़े हुए है और देख रहे है आंटी भी देख रही है कुछ सोच रही है।

वो स्टेज पे बैठी हुई है और अह- हाथोंकों कान पे रखी हुई है साउंड बज रहा है सूट पहनी हुई है कालीन रेड कलर का बिछा हुआ है उपर मंच है चैर डली हुई है व्हाईट कलर के कुशन डले हुए है।

और ऊपर सीढ़ी लगे हुई है यहा पे आते-जाते काफी अच्छा ल-लाइटिंग लगी हुई है और ऊपर रुम दिए गए है काफी बड़ा सा है और देखना ब --